कुछ ये ट्रेन क्या है सामने में--

इस रोड के साइड एक स्कूटी एक कार है।

ये एक नदी हैं इधर पे एक आदमी खड़ा है जो ए घास है नीचे के साइड और उस साइड नदी है उस साइड भी एक ब्रिज है और एक पुल जैसा कुछ है।